ये यहाँ पे कार पार्किंग की जाती है आप देख सकते यहाँ पे कार पार्किंग और यहाँ पे यह देखिए नीचे यहाँ पे बिजली का वो लगा हुआ है इसे कॉल पुरी कॉलोनी में बिजली सप्लाई की जाती होगी।

लगी हुई है लगे हुए है यहा पे यह लोहे के पाइप वगेरा भी लगे हुए है ये लगी हुई है यहा पे मकान का काम चल-- मकान के छत का काम चल रहा है ये जिस काम चल रहा है जो की चंद्रपुर मे हो रहा है।

आप देख सकते है इस पार्कमें दिल्लीके नारा वाला पार्क है इसमें घास वगैरा लगी हुई पार्क में देखिए इस पार्क के चारों तरफ कितने पेड़ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है काफी अच्छा पार्क लग रहा है।

ये आप देख सकते हैं यह जो मार्केट है जो की महाराज जोधपुर का मार्केट है आप देख सकते हैं।

ये देखिए यहाँ पे पार्क दिख रही है जो की चंदपुर एक माल चंदपुर का पार की पार्क देख सकते है कितना प्यारा पार्क लग रहा है इसमे काफी सुन्दर सुन्दर पेड़ लगे हुए है।

ये देखिये काफी बड़े काफी घने पेड़ है यहा पर आप साइड मे देख सकते है यहा पे जो छोटी घास टाइप के लगी है जो घास काफी सुन्दर लग रही है इस पार्क मे झुले वैगेरा भी है बच्चों के लिए।

ये देखिये आप देख सकते है ये काफी बड़ी-बड़ी यहा पे मछलिया रखी हुई है ये जो मछलिया है ये जो मछ्ली बाजार मे रखी हुई है।